और पेड़ का जड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बिलाती दिखाई दे रहा है धनिया पत्ता नींबू बैंगन केला बहुत सारा सब्जी फल दिखाई दे रहा है।

सामने में अंगूर भी रखा गया है।

दीवाल का कलर लाल किया गया है नीचे में और ऊपर में पीला कलर ।

लाइट भी लगाया गया है सीलिंग पे।

यह एक शादी का फंक्शन है जहां पे स्टेज में बहुत अच्छे फूल सजाए गए हैं।

यह एक मेला का तस्वीर है।

इन्टा लगाया गया है और एक आदमी अपने हाथ पे मोबाइल रखे हुए हैं जूता पहने हुए हैं जींस पहने हुए हैं।

पॉकेट में एक पेन भी नजर आ रहा हैं।

और ऊपर में लाइट लगाया गया गया है और लिखा गया है डेली और कुछ लिखा गया वो दिखाई नहीं दे रहा है।

शीशा भी लगाया गया है।

उसके साइड में दीवाल है उसका कलर व्हाइट कलर किया गया है।

लंबा सीढ़ी है उसमें बहोत आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक किसी जगह का दृश्य है।

और गेट के बाहर में एक सादा कलर का लाइट खंभे पे लगे हुए हैं जो जल रहे हैं।

एक आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

दो खंभे भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां पे चेयर लगे हुए हैं जो खाली हैं।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है।

और सबका शटर आधा ही खुला हुआ है और एक शटर पूरा खुला हुआ है उसके ऊपर में बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हुए हैं।

तकिया भी सादा कलर के दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर पूरे बड़े बड़े पत्थर चट्टान जिसको बोलते हैं वह दिखाई दे--

एक आदमी लाल कलर का टीशर्ट पहना हुआ है और एक आदमी हाथ मे मोबाइल लेके खड़ा है।

पेड़ पानी में दिखाई दे रहा है।

बास का खंबा लगाया गया है उसमें लाइट भी दिखाई दे रहे हैं और तार भी खींचा गया है।

इसमें बहोत बेंच लगा हुआ है कुछ बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।

वाल फैन भी लगाया गया है और लाइट भी लगाया गया है।